यहां पे आप देख सकते हो ये पंखे हैं पं उन मतलब जैसे कुलर कलर के पंखे हैं और ये पंखे रखे हुए हैं ऐसे इन पंखींयों का रंग पंखुड़ियां का रंग --

और यहां पे एल_सी_डी वो लगी हुई है यहां पे शीशा भी लगा हुआ वॉश लेसन भी दिख रहा है यहां पे।

यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट इंडिया --

ये यहां पे देख सकते हैं ये बिजली का समान रखा हुआ हैं यहां पे--

ये यहां पे देख सकते हो आप लिखा हुआ है और यहां पे ये एक घर है और स्कूल उसका है मेरा मतलब--

देख सकते हो आप यहां पर वाशिंग है और जो ये बना हुआ मकान सा देख रहा है यहां पे गेट देख रहा है ये ब्ल्यू कलर का गेट है।

यहां बस दिख रही हैं कुछ सफेद रंग की है और ग्रीन रंग की है।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

और यहां पे आप देख सकते हो पानी पानी दिख रहा है।